इस इमेज में बैंक दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं।

इस इमेज में सामने ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाइ दे रहे हैं यह एक हॉस्पिटल का वार्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत ही खूबसूरत पीले और हरे करे के पंछी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

इस इमेज मे यहां पर दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ब्रजवासी लिखा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है यहां पर एक ब्लू रंग का बोर्ड भी नजर आ रहा है और कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर टेंट लगा हुआ है और कुछ लोग यहां पर बैठे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और ऊपर लाइटें जलती नजर आ रही --

इस इमेज में यहां पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं सामने यहां पर सफेद रंग की बस भी है और ऊपर टीन शेड नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है और यहां पर लाइटें भी जल रही हैं।

इस इमेज मे यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है जो फूलों का सजा हुआ दिखाई दे रहा है।